यख मा जी बादल छन दिखेण लग्यां कुरेड़ु छ लग्युं यख मा जी बड़ा बड़ा पहाड़ छन बड़ा बड़ा छन।

यख मा एक बस अड्डा भी छा यख मा जी बिजली का खम्बा छन लग्यां सीढ़ी छा हरयां भरयां डाला छन यख मा जी कई सारा मकान भी छन।